यहाँ बहोत सारी ट्रॉफिया रखी हुई है। यहाँ पर कई बैलून भी सजे हुए है। बीच मे पीला --

चीजें बजा रहे हैं और एक एक कुछ लोग गाना गा रहे हैं। बहोत सारी महिलाएं हैं।

डांस की छात्राएं हैं। जिन्होंने अलग-अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

यह दृश्य कही का लिया गया हुआ है। जिसमे बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं।

दो हज़ार बाइस को दस बजे से एक बजे तक होने का प्रारंभ है। यहाँ पर दो तीन बेड लगे हुए हैं।

की यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ़ एटीएम ऐसा लिखा हुआ है। अंदर देखेंगे तो एटीएम मशीन है। यहाँ पर लोग जाते हैं।

साथ ही साथ पेन पेंसिल रबड़ स्केल सभी टाइप की चीजे प्रदान की जाती हैं।

और साथ ही साथ दिखेगें तो चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है पेड़ पौधे से लगी हुई।

में ऊपर की ओर लिखा हुआ है रनिंग इसमें एक तरफ लड़की भी बनी हुई है और दूसरी तरफ एक दौड़ने वाला इंसान भी।

साथ ही साथ देखेंगे तो नीले टीशर्ट वाला भी दिख रहा है।

पहाड़ो को देख रहा है और बादल बहोत अच्छा मौसम हुआ हो रहा है यहाँ पर।